बहोत सारे घर भी बने हुए हैं।

मेंशन है यहाँ पे हारमोनियम ढोलक --

काफी सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है।

चर्च में प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे --

घूमने के लिए आते है यह रोड में --

बस अच्छी जगह है बहुत सारे आदमी --

ये खींच रहा है यहां पे बहोत सारे लोग --

आते हैं यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी रह --